दे रहा मॉल मे एक शॉप नजर आ रही है शॉप के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर फॉरएवर ट्वेंटी वन लिखा हुआ है यहा पे काफी सरे लोग दिखाई दे रहे है यहा पे काफी सारी लाइटिंग नजर आ रही।

ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड काफी बड़ा दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड का कलर नीला नजर आ रहा है ग्राउन्ड फुटबॉल का दिखाई दे रहा है यहा पे काफी सारे लोग नजर आ रहे है यहा पे काफी सारे घर दिखाई दे रहे है।

काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है। घर की उपर कुछ छत्रिया नज़र आ रही है। यहा पर काफी सारे पेड़ बड़े दिखाई दे रहे है। पेड़ काफी हरे भरे नज़र आ रहा है। पीछे काफी सारा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

समुद्र मे एक जहाज दिखाई दे रहा है जहाज काफी बड़ा दिखाई दे रहा है जहाज मे काफी सारे खंबे नजर आ रहे है यहा पर काफी सारे तार दिखाई दे रहे है।